इसमे कुछ पुरुष बहुत सारे महिला कुछ बच्चे नजर आ रहे है ऊपर हमे टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारी सजावट भी हुई है। नीचे भी बहुत सारे लाइट लगे--

ये तस्वीर चर्च के बाहर की तस्वीर हैं पीछे मे एक मूर्ति नजर आ रहा हैं बहुत सारे पत्थर भी दिखाई दे रहे है बहुत सारे पौधे भी लगे हुए है बगल मे एक बिल्डिंग नजर आ रहा है जिसपर पाइप दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे खिड़कियाँ दरवाजे नजर आ रहे है दिन का समय है धूप पड़ी है बहुत सारे घाँस दिखाई दे रहे है।

यह एक स्कूल का तस्वीर है यहा पर बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे जो पेपर से कुछ आर्ट बनाते नजर आ रहे यहा पर कैंची दिखाई दे रही है टेप दिखाई दे रहा टेबल दिखाई दे रहा खिड़की दिखाई दे रहा है।